ब्लैक सीढ़ी है। साईड में गमला रखा हुआ है।

साईड में बहुत सारे पेड़ हैं। दूर से दिख रहा है।